नीचे फर्श लगा हुआ उधर पीछे में कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है नया गाड़ी दिखाई दे रहा है सरक सुरक्षा कॉर्नर दिखाई दे रहा है उधर पीछे में खम्मा दिखाई दे रहा है उधर भी कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रही --

और वहीं पे हाथ एक सीधा है एक थोड़ा बांका दिखाई दे रहा है पिच्छे में शॉप दिखाई दे रहा दुकान दिखाई दे रहा है उसमें अंदर कपड़े पहने हुए हैं उधर कुछ टी शर्ट वगैरह कुछ लटके हुए हैं।

उसमें अलग अलग प्रकार के गिफ्ट व आइटम रखे हुए है सामान रखा हुआ है स्टील का कुछ लगा हुआ समान उधर साइड में कुछ बाल्टी उल्टे ऐसा लगा हुआ --

और उनके अपनी एक बुक भी है पीछे एक रोड दिखाई दे रहा है उसमें चार टायर वाला एक रिक्सा दार है और पीछे कुछ लेबर काम भी कर रहे है बोल्ट कुछ लगा रखा है।

एक आदमी आ रहा है एक जा रहा है एक आदमी चश्मा लगा के तिलक लगा के खड़ा है इधर भी महिलाएं और लड़कियां --

ये गीता जी मोटर्स मोटर्स दिखाई दे रहा है उसमें कोई मोटर्स का कुछ है सामान है उसमें जब कि बाहर में एक दो गाड़ियां खड़ी है एक छोटी गाड़ी --

ये गणपति बप्पा का वो फोटो दिखा रहा है मूर्ति दिखा रहा है गणपति बप्पा का सामने उधर कु--

ये कुछ दुकान बड़ा दुकान कुछ दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे कूलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डिजाइन के कूलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर के डिजाइन --

यहां कुछ सीट लगी हुई है सीट के सामने वो लाइब्रेरी का वो कुछ जैसे दिखाई दे रहा लाइब्रेरी में जैसे पढ़ाई करते हैं ऑफिस में कुछ जैसे एक आदमी काम करता है अलग अलग आदमी --

ये एक वाटर पार्क पार्क का वाटर पार्क दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें बु सलाइटें लगी हुई है उधर गोल वाली सलाइटें लगी है इधर सामने सीधी वाली सलाइटें लगी है उधर उसमें --